इधर पे एक फ़ील्ड दिख रहा है।

इधर पे एक गाड़ी सर्विस सेंटर है।

ये एक चार्च है। चार्च बहुत बड़ा है। बहुत सुंदर है।

बिस्किट से ड्राई फ्रूट से --

दूर में एक अर्चला दिख रहा है अर्चला के नीच में बहौत सारे लोग बैठे हैं।

सेलून मैं बोहोत सारे पोडक्ट दिग रहा है।

इधर पे एक पेट्रोल पंप है पेट्रोल पंप के अंदर बहौत सारी मशीन्स हैं सामने एक बाइक है बाइक के ऊपर एक लोग बैठे हैं पास में एक औरत खड़ा है।

इधर पे एक रास्ता है रास्ता के साइड में कुछ बाइक खड़ा है कुछ औरत कुछ बच्चा कुछ लोग भी है।

इधर पे एक रास्ता दिख रहा है रास्ता में एक टॉय ट्रेन है टॉय ट्रेन बहुत सुंदर है रास्ता के साइड में एक पेड़ का --

टेबल पे बहुत सारे पेपर कटिंग दिख रहा है।

इधर पे एक ड्रेस का दुकान है। दुकान बहुत बड़ा है। दुकान के अंदर बहुत सारी लेडीज जेंस ड्रेस मिलती है। इधर पे ड्रेस की क्वालिटी बहुत अच्छा है।